इसके साथ कोई है और बहुत ही --

इसके सामने कई सारी बाइकें खड़ी हैं स्कूटी खड़ी है और --

और इसमें काफ़ी सारी और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की हैं।

काला सा पानी है और चारों तरफ पेड़ है इसके और रस्ता है।